ये तस्वीर बहोत सारे पौधों की है।

इसमें हरे रंग के बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं।

ये तस्वीर एक होटल के कमरे की है।

ये तस्वीर एक बहोत बड़े ग्राउंड की है।

ट्रैक्टरों की है यहां लाइन से लाल और नीले रंग के ट्रैक्टर --

खंबे भी बने हुए हैं।

ये तस्वीर बहोत सारी दुकानों की है।

दुकानों पर बहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

दीवार पर कुछ पेंटिंग जैसी चीजें--

आते जाते हैं यहां--

और बहोत सारे लोहे के सामान--